बहोत बहोत बहोत अच्छी जगह है। थैंक यू ।

आप जो भी चूज करना चाहते हैं यहां से सिलेक्ट करके चूज कर के कर सकते हैं आप ले सकते है। थैंक यु |

जैसा कि देख सकते हैं। ये कोई आपका-आ जू है जो-ऑ आपके व्हाइट मोर है।

एप्प-ए-ल मोसंबी संतरा-आ तरमू-उ-ज पपिता-आ--

तो वहां ये यह लोग जा रहे हैं। उसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं।

जहाँ पे ये लोग बोटिंग कर रहें हैं। बोटिंग करके कहीं जा रहे हैं घूमने। एन्जॉय कर रहें हैं।

ये देख सकते हैं आप सन सेट कहीं कोई एरिया है हमारा कलकत्ता का कोई प्लेस है।

जैसे कि देख सकते हैं यह कोई बिल्डिंग है-ए-ए । आई.बी.एम. -म-म--

ये आपका फोर्ट है। तो ये वही का फोटोज है। तो वहाँ पे लोग जाते है। फोटो क्लिक करते हैं । इवनिंग के टाइम बहोत सुंदर दृश्य है।

ताकि देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है तंदूरी चाय स्पेशल लिस्ट ।

ये आप देख सकते हो मीराज सिनेमाज है। तो यहां पे अगर कोई भी न्यू नई मूवी है।

वो यहां पे वो लगती है तो आप भी जा सकते है मीराज सिनेमाज --

कुछ भी एक्स वाय जेड आइटम बर्तन का ही है।

कोई भी बुक ले सकते है। तो ये वहाँ का ही बुक है। ओके ।